यहाँ पानी है यहाँ का नज़ारा बहुत ही अच्छा है एवं एवं बहुत ही सुंदर है यहाँ का पानी बहुत ही अच्छे लगते है लोग दूर दूर से यहाँ नहाने आते है एवं यहाँ का नज़ारा देखने आते है शाम का टाइम है यहाँ न नज़ाना बहुत अच्छा ही होता है।

ये श्री श्याम मंदिर जामताड़ा है बहुत ही प्रसिद्ध एवं नामी मंदिर है यहाँ दूर दूर तक लोग पूजा करने के लिए आते है एवं बहुत ही अच्छे सीन है यहाँ का देखने में मंदिर का बहुत ही अच्छी सजावटी से बनाये गए है ये मंदिर एवं बहुत ही सनदार लगते है ये मंदिर एवं पूजा पूजा के समय बहुत ही आदी --

एवं बहुत ही अच्छे है यहाँ का मंदिर|

ये लोग मजदूर है यहाँ काम कर रहे है ढलाई में एवं सीमेंट लेकर आ रहे है या ढलाई कर रहे है ये लोग मजदूर लोग ढलाई का काम करते है एवं बहुत ही अच्छे से काम करते है अपना बहुत ही शानदार से ढलाई करते है बहुत ही अच्छे लगते है इन लोग का ढलाई करना।